और एक लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

और पीछे की ओर कुछ पेड़ और कुछ मकान भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

सब्जियों का नाम है गाजर लहसुन गोभी आलू प्याज नींबू मटर--

और कुछ पैंपर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

और कुछ गाड़ियों के ढक्कन भी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं।

इन गुब्बारों का कलर हरा पीला काला है।

चित्र में हमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और उनके आमने सामने कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।

इस चित्र में हमें एक कांटेदार तार भी दिखाई दे रहा है।

और एक मोबाइल और एक चाकू और एक लीड भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जिन चित्र पर कवर डाले हुए है।

जैसे कि अलग अलग रंग के है जैसे सफेद संत्री गुलाबी और कुछ छतों मर डिजाइन भी दिखाई दे रहा है।

और सामने अंदर की ओर दो डमी रखे हुए हैं।

इस चित्र में हमें दो काउंटर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक डस्टबिन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है।

जिस पर सफेद रंग की सफेदी हुई हुई है।

इस चित्र में हमें एक सोफा दिखाई दे रहा है।

और कुछ पटाखे भी जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि फेविकोल पेंसिल पेन रबर कटर ज्योमेट्री --

और बराबर की साइड में दो कुर्सियां भी रखी हुई है।

इस पर लिखा है डाक्टर उमेश चतुर्वेदी।

अंदर की ओर फ्रिज भी रखा हुआ है।

और यह व्यक्ति एक जैकेट अपने हाथ में रखे हुए हैं

और कुछ डेकोरेशन भी हुई हुई हैं।

इस चित्र में हमें चार स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक बेड और बेड पर दो चद्दर रखी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ ईंटे भी रखी हुई है और एक बाइक भी खड़ी हुई है।

इस चित्र में हमें एक व्यक्ति दुकान के अंदर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।